भूरे रंग का बड़ा सा लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।

एक नीले रंग का ड्रम भी दिखाई दे रहा है।

कुछ मजदूर यहां पर नजर आ रहे हैं।

एक केबिन को देख रहे हैं।

सामने एक ग्लास की टेबल रखी हुई है।

कुछ सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने सफेद रंग का बड़ा सा सटर लगा हुआ है।

यहां पर हमें सामने एक गार्डन नजर आ रहा है।

गार्डन की बाहरी दीवार हरे रंग की है।

सामने दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर की स्टैंड पर खड़े नजर आ रहे हैं।

सामने बड़ा सा पंडाल नज़र आ रहा है।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

एक बड़े से कांच के फ्रेम में--

बड़े टेडी बीयर्स नजर आ रहे हैं।

साथी यहां पर हमें आम के पौधे और कुछ गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं।

साथ ही यहां पर हमें कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

एक टॉय स्टोर को देख रही है।

जिस पर आइसक्रीम के कुछ फोटो नजर आ रहे हैं।

सामने हमें कुछ पानी की बोतलें नजर आ रहीं हैं साथ ही सामने एक बड़ी सी खिड़की दिखाई दे रहीं हैं।